यह एक गोदाम हैंऔर बगल मे एक ट्रांसफॉर्मर हैं और केला का पोधा हैं और बगल मे एक पथ्थल रखा हुआ हैंऔर उस जाने के लिए एक रोड भी बना हुआ हैं कच्ची रोड बना हुआ हैं।

वह एक बहुत से पुराने बस है जो व्हाइट कलर और ब्लू के हैं।

यह मछली बेच रहा है और यहाँ पे ढेर सारे भी मछली रखे हुए है।

यहा एक बस है और बस बहुत पुराना है ओर बहुत से सारे आदमी भी है। एक बूढ़े है। ब्लू रंग का चादर ओढ़े हुए है।

वहा आगे की ओर एक टेम्पो लगा हुआ है ओर बोहोत से सारे लोग चल रहै है और कुछ खड़े--

ये लड़का बोहोत ही स्टाइल से फोटो खींचा हुआ है ऊपर कैप पहना हुआ है नीचे जूता पहना हुआ है ब्लू र ब्लू रंग का कोट पहना हुआ है व्हाइट रंग का शर्ट पेटा हुआ है और ब्लैक रंग का जो हैं जीन्स पेहना हुआ हैऔर पीछे की ओर एक लड़का खड़ा हुआ है वहां बोहोत सारी कुर्सियां भी रखे हुए है।

और उधर जिम की बोहोत सी सारे सामान हैं वहाँ गुब्बारा रखा हुआ हैं।

जहाँ पे बहुत से लोग भी हैं कुछ लोग सीढ़ी पे बैठे हुए हैं कुछ लोग के चप्पल सीढ़ी पे हैं और वहां ग्रिल लगा हुआ हैं।

सभी धोती और व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए है और एक सारंगी भी लड़की पकड़े हुए हैं।

यहाँ एक आदमी बैठे हुए है और एक आदमी बैठे हुए है लेकिन वो फोन पर बात कर रहे है वो पै पेपर रखकर बैठे हुए है। और एक आदमी और वहाँ पर दो लोहै के गेट है बहुत से बड़ा-बड़ा गेट है एक और ये दु--एक मकान है।